इस दृश्य में एक बस स्टैंड का चित्र है।

इससे पानी का फुआरा फेंक रहा है।

अ इसमें आदमी भी बैठा हुआ है जो जूता ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ है।

इसमें एक आदमी खड़ा है।

इस मैरिज हॉल में बहुत सारे लाइट लगे हुए है।

जो बेहद खूबसूरत सजाया हुआ है और इसमें लाइट भी लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारे बस खड़े हैं।

इस बस स्टैंड में बल्ब भी जल रहा है।

ये इसके पीछे पर्दा लगा हुआ दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे बाइक और कार और स्कॉर्पियो भी लगा हुआ है।

इसके दीवार पे मूर्ति का पिक्चर भी लगा हुआ है।

यह एक मॉल का चित्र है।

यहां बुलेट को जक पे उठाया हुआ है।

यह एक डेम का चित्र है।

और यहां मैदान में छर्री और इंटा भी रखा हुआ है।

यह एक एस_बी_आई ए_टी_एम का चित्र है।

एक आदमी हेलमेट लगाकर खड़ा है जो अपना हाथ पॉकेट में डाला हुआ है।

और एक खजूर का भी पेड़ है जो बेहद खुबसुरत दिख रहा है।

मंजिल का गेट खुला हुआ है और अंदर में कुछ लोग भी खड़े हैं और एक गाड़ी कार लगा हुआ है।

और उसके बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं।

यह एक बेहद खूबसूरत सा रूम का चित्र है।